काली मंदिर है मंदिर है बड़ा वाला मंदिर है बहुत ही भारत का सबसे अच्छा मंदिर यही है पीछा में पानी है ऊपर मे मेघ लगाया हुआ है ।